और यहाँ पे फूलों से डेकोरेट किया हुआ है।

कस्टमर आके बुक खरीद रहे हैं।

यहां पर एक कपड़े की शॉप नजर आ रही है यहां पे मेकअप प्रोडक्ट भी रखा है वॉल्टन फ्रेम --

यहां पर एक ग्राउंड नजर आ रहा है बड़े-बड़े दरख्त नजर आ रहे हैं।

रखे हुए हैं यहां पे आई टू स्टॉप हुआ है यहां पे बड़े-बड़े विंडो नजर आ रहे हैं डोर नजर आ रहे हैं।

एक बोट नजर आ रही है। उसमें भी तीन लोग बैठे हुए हैं।

छोटे-छोटे पॉट्स नजर आ रहे हैं थ्री नजर आ रहे हैं।

पेयरिंग नजर आ रहे हैं दूसरा आदमी भी नजर आ रहा है।

यहां चेयर है चेयर के ऊपर वो अपना बैग रखे हुए हैं एक--

गेट नजर आ रहे हैं नीचे कचरा गिरा हुआ नजर आ रहा है यहां एक पॉट्स है बड़े बड़े --

इसके सामने वायर है। आसमान साफ नजर आ रहा है। खंबे है फोकस है लाइट है।